बिल्डिंग का नीचे दो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में मुझे बहुत सारा आदमी देखने को मिल रहा है।

वहां में बहोत सारा मशीन सब रखा गया है।

दीवार में दो लाइट दिखाई दे रहा है साइड में एक खिड़की भी है।

यहां में एयरटेल मैक्रोमैन जोकि वोडाफोन सब भी लिख के दिखाई दे रहा है।

और नीचे ग्रीन कलर का मैट बिछाया गया है।

गाड़ी और बाइक सब में फूल का माला लगा हुआ है।

बहुत सारा कपड़ा प्लास्टिक का अंदर नीचे पैक करके रखा गया है।

और बाहर में भी बहुत सारा कपरा टंगा के देखने को मिल रहा है।

बिल्डिंग का आगे बड़ा पेड़ और छोटा पेड़ सब भी लगा के है।

सामने में एक ब्लैक कलर का अंब्रेला भी दिख रहा है।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

वाल का कलर ऊपर में व्हाइट बीच में रेड और नीचे में ब्रिंजल कलर से पेंट करके है।

और गेट के ऊपर गवर्नमेंट रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल मायू लिख के है।

एक अंदर एक आदमी भी दिख रहा है।

ये तस्वीर में मुझे सामने में टेबल के ऊपर बुक्स रखकर दिखाई दे रहा है।

पीछे साइड में बहोत सारा इलेक्ट्रिक पोस भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे टेबल का कलर ब्लू से पेंट किया गया है।

और टेबल का ऊपर भी बहुत सारा बॉक्स और बॉक्स रखा गया है।

ओर बिल्डिंग में दरवाजा के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

तस्वीर में मुझे सामने में एक लोहा से बना हुआ एक रेलिंग दिखाई दे रहा है।

और घर का पीछे बहोत सारा पेड़ सब भी देखने को मिल रहा है।

उसका साइड साइड में बहोत सारा पेड़ सब भी लगाया गया है।

और सामने में एक ऑरेंज कलर का गाड़ी है।

और आगे में दो घर देखने को मिल रहा है और घर का साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

और साइड साइड में बहुत सारा घास और पेड़ सब भी उग के हैं।

रास्ता का साइड में एक बड़ा सा पोल भी है।

यहां में छत टीना से बना हुआ है।

सामने में बहुत सारे टेबल है जोकि ब्लू कलर में है।

जहां में बहुत सारा टेबल और चेयर सब रखा गया है।